केबल गया है जो घर को नया सेर्विस देते हैं सर्विस केबल लगा हुआ है उपर से भी इलेवन के_बी का केबल गुजरा हुआ है।

अम्म अ कंधे पे गमछा लटकाए हुए है खाफी ऐसे पोज़ में बैठे हुए है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फल को अलग अलग ट्रे में सजा कर के रखे है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फल है मैं कितने फलों के नाम गिना सकूं --